एक बड़ा सा गार्डन है गार्डन में बहुत सी घासें है जो के हरे भरे है बहुत से लोग कुर्सी में बैठे है कुछ लोग खड़े हे भीड़ में--

एक गार्डन है में एक नकली हाथी बनी है बहुत से घासे है जो हरा भरा है पेड़ पौधे है अगल बगल ईंटे की दीवाल है पीछे बड़ा सा मकान है जो की दो मंजिले का है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान में बहुत सी घासे है जो की हरे भरे है चारो साइड इटे की दिवाले है।

एक ट्रांसफार्मर है बहुत से उप्पर तारे है दो आदमी उप्पर चड़े है।

घासे है जो की हरे भरे है आकाश का रंग नीला है।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में बहुत सी कुर्सियां है पेड़ पौधा है जोंकी हरे भरे है एक गेट लगा है आकाश का रंग नीला है बहुत सी घासे है डिज़ाइन दार पत्थार लगी है।

एक रस्ता है रास्ते के बगल में एक बड़ा सा दुकान है जिसके बाहर लिखा है रीसोन।

एक स्टेशन है स्टेशन का नाम चूरू जंक्शन जिसके टाइम बारा एक्कावान कुछ लोग कुर्सी पे बैठे है दो पटरिया है।

रास्ता है रास्ते के बगल में एक खाटू श्याम का मंदिर है जिसमे बहुत से फुले लगी है।

अगल-बगल तस्वीरे है उनमे फुले चढ़ी है पीछे कि ओर गणेश जी का मूर्ति है लाइटे लगे है।

रात का समय है कुछ आदमियत मैदान में खड़े है।

डबे है कांउटर है जिनमें कांच लगी है एक आदमी खड़ा है नीचे हरे कलर की टाट बीछी है नेट बिछे है फेन है लाइट है।